और यहां पर अलग अलग बहोत सारी सब्जियां भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यह किसी मकान की फोटो दिखाई दे रही है जो कि एक खाली प्लाट में बना हुआ छोटा सा बंद मकान है।

ये किसी जगह की फोटो दिखाई दे रही है जोकि एक गुरुद्वारे की फोटो है।

ये किसी हॉल की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे बहुत सारी हरे कलर की टेबिलें लगी हुई नजर आ रही है।

ये किसी स्विमिंग पूल की फोटो दिखाई दे रही है जो कि किसी होटल की रूफ टॉप पे बना हुआ नजर आ रहा है।

जहां पे एक लकड़ी की टेबल रखी हुई है जिसके ऊपर एक टिशू का बॉक्स भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जहां पे क्रेन के द्वारा खड्डा करके जमीन में बड़ी जगह बनाई जा रही है।

यहां पर बच्चों के अलग अलग टॉयज भी रखे हुए दिखाई दे रहे है यहां पे बच्चों की एक छोटी सी का भी रखी हुई दिखाई दे रही है।